तीन चार लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो पर दुकान दि--

एक ब्रिज दिखाई दे रहा हैं।

एक छोटी सी रास्ता दिखाई दे रही है।